इसपे भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है इसपे रेड कलर का साइन बना हुआ है जो खतरे के--

मेंन्स सलून लग रहा है यहां पे लोग अपने बाल कटाने आते हैं।

इसे दो मिलीलीटर पावर गिरी जी मंदिर है और तीन किलोमीटर भी लिखा हुआ है जो सफेद कलर का दीवाल है।

इनके फिगर है जो टीचर देख के शायद पढ़ाते हो।

ये यह एक सफेद कलर का घर है स्कूल जैसा लग रहा है बाहर खूब सा बड़ा सा मैदान लगा पड़ा हुआ है।

ब्लैक कलर का चॉकलेटी केक है पा पाइनएप्पल केक है।

न्यू अमन ढाबा स्वादिष्ट भोजन यहां मिलता है होटल एंड रेस्टोरेंट है।

जो ल् रेड कलर और चेकदार कपड़ा पहने हुए पीछे एक टेबल र --

की अ इसकी दहाड़ बोहोत तेज होती है यह लप बोहोत ही तेज दौड़ --

झंडा लगा हुआ है आगे मैदान है मैदान में शायद कोई खेल--

सरकारी वार्ड लग रहा है। इसमें फीमेल जन्नड वार्ड में सिर्फ लेडिस ही जा --

ये सफेद कलर की टंकी है जहां पानी या किसी की टंकी होगी।

उसके ऊपर हरे कलर का पेड़ रखा हुआ है कुछ समान वो लेके जा रहे हैं।

ये मशीन हैं जिस जो सीमेंट को और ढलाई करने के काम आती है।

इसमें दो हत्थे लगे हुए हैं चलने वाली मशीन है जिम जैसा लग रहा है।

इसपे चला चला जाता है और इसमें पीले कलर का भी कुछ बना हुआ है।

दो लोग यहां पे बैठेगा और एक डायरी रखी हुई है लिखने के लिए पेन भी है।